इसके ऊपर एक डॉक्टरी है जिसका नाम है डॉक्टर महीप सलूजा।

ये कोई कॉस्मेटिक की दुकान है इस दुकान पे गमले में करके फ्लावर्स बिक रहे हैं।

सैलून में एक शीशा भी लगा हुआ है तथा सैलून के नीचे बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं।

इस रूम में बहुत सारी पेंटिंग्स लगाई गई हैं।

साइड में एक आदमी है जो खड़ा हुआ है।

काउंटर पे एक इस रूम में एक काउंटर भी है और एक चेयर भी है।

सूर्य की किरणें दिख रही है बादल में।

थोड़ा थोड़ा इसमें पेड़ भी दिख रहा है और इसमें एक टावर दिख रहा है।

एक स्टूल है जिसमें तमाम प्रकार की मछली बिक रही हैं। आगे की तरफ में एक मेज भी लगा हुआ है।

काउंटर पे एक लड़का जो हाथ रख के बैठा हुआ है।

इस जिम में बहोत ही बॉडीबिल्डर के कुछ फोटो वगैरा लगाए गए हैं और बॉडी दिखाई गई है इसमें--

बहुत सारे गेट लगे हुए हैं इस घर में--

इसमें ऊपर की तरफ एक फूल भी लगा हुआ है।